और साइड में बड़े-बड़े पेड़ हैं जो पेड़ हैं वो हरे भरे --

जिस एक बच्चे ने पीले कलर का टी-शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है इस तस्वीर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं ।

इसमें एक वास बेसिन भी रखा हुआ है और दरवाजा भी खुला हुआ है दरवाजे का कलर हल्का कॉफी कलर है।

इस तस इस तस्वीर में एक ऑरेंज कलर का स्क्रीन दिख दिखाई दे रहा है ।

इस स्क्रीन में वेलकम टू फन सिनेमा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।